यहाँ पर फूल फुहार भी दिखाई दे रहा हैं और खंबे भी दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा बादल भी दिखाई दे रहा है।

अच्छा लग रहा हैं झूला टाइप का बना हुआ हैं यहाँ पर जाली भी दिखाई दे रही हैं चबूतरा भी दिखाई दे रहा हैं बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ज--

जाली दिखाई दे रही है कांच भी दिखाई दे रहा है स्कूटर भी दिखाई दे रहा है बोहोत बहुतअच्छा लग रहा है देखने मे शटर भी दिखाई दे रहा है लाईट भी दिखाई दे रही है खंभे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक नदी भी दिखाई दे रही हैं और हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा हैं पहाड़ भी दिखाई दे रहा हैं और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और धुआं भी दिखाई दे रहे--